पहाड़ के आगे एक छोटा पेड़ भी है और नीचे में छोटे छोटे घास भी हैं जो कि हरे भरे हैं।

मैदान में लड़के और लड़कियां दोनों हैं।

दीवार पर एक घड़ी है और उसके बगल में पंखा ए_सी भी लगा हुआ है।

इसके नीचे बहुत सारे दुकाने लगे हुए है जैसे डिलीवरी पॉइंट धनबाद स्टाइल --

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है इस बिल्डिंग के दीवार की कलर ऑरेंज --

पार्क के अंदर छोटे छोटे अनेक प्रकार के फूल पत्तियां और शो प्लांट और घास भी लगे हुए हैं।

इसमें एक चौकी है चौकी में तीन बच्चे बैठे हुए हैं।

इस बिल्डिंग के पोस्टर पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू।

इसके दीवार पर दो खिड़की भी है।

नीचे का फर्श पर व्हाइट कलर की टाइल्स बिछी हुई है।

आसमान ब्लू रंग का दिखाई दे रहा है और पहाड़ भी बगल में हैं।

यह एक डेंटल केयर का कमरा का दृश्य है इस कमरे की दीवार व्हाइट पुट्टी से किया हुआ है।

नीचे की टाइल्स व्हाइट कलर की है।

इस बिल्डिंग में पांच खिड़कियां है जो की ब्लू रंग का है।

इसमें ब्लैक कांच लगे हुए हैं।

पे ब्लू कलर का पेंट है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है।

बिल्डिंग की दीवार पर लाल कलर की रंग से सखी वन स्टॉप सेंटर पलामू लिखा हुआ है।

पंखे के बगल में ढेर सारे बैलून भी लगे हुए हैं इसके नीचे का फर्श व्हाइट कलर का है।

यह एक इस स्कूल का कमरा का दृश्य है।

इस कमरे में बहुत सारे बेंच टेबल लगे हुए हैं।

बाउंड्री का कलर वाइट हैं।

मारी का कलर ब्राउन है।

ईसकी नीचे में बालू बिछा हुआ है।

उसके बगल में एक काले रंग की बाइक खड़ी हुई है।